लिबर ऑफिस इम्प्रेस में कस्टम एनिमेशन कस्टम एनिमेशन पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम इम्प्रेस में कस्टम एनिमेशन के बारे में सीखेंगे
यहाँ हम उबंटू लिनक्स 1004 और लिबरऑफिस सूट वर्जन 334का उपयोग कर रहे हैं
पहले प्रस्तुति sample impressओडीपी खोलें
स्लाइड्स पैन से पोटेंशियल अल्टरनेटिव्स थंबनेल पर क्लिक करें
यह स्लाइल अब मैन पैन पर प्रदर्शित होती है
अब सीखते हैं कि अपनी प्रस्तुति को अधिक आकर्षित बनाने के लिए कस्टम एनिमेशन का उपयोग कैसे करें
स्लाइड में बायीं ओर के पहले टेक्स्ट बॉक्स को चुनें
यह करने के लिए टेक्स्ट पर क्लिक करें और फिर दिखाई दे रहे बार्डर पर क्लिक करें
इम्प्रेस विंडो की दायीं ओर से टास्क्स पैन में कस्टम एनिमेशन पर क्लिक करें
एड पर क्लिक करें
कस्टम एनिमेशन डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
ध्यान दें कि एंट्रेंस टैब खुलता है
एंट्रेंस टैब स्क्रीन पर वस्तु के प्रदर्शन के तरीके को नियंत्रित करता है
हम इस श्रृंखला के बाद के ट्यूटोरियल में अन्य टैब्स सीखेंगे
बेसिक के नीचे डायगोनल स्क्वेयर्स चुनें
आप गति को भी नियंत्रित कर सकते हैं जिस पर आपका एनिमेशन प्रदर्शित होता है
स्पीड फील्ड में ड्राप डाउन बॉक्स पर क्लिक करें स्लो चुनें और ओक पर क्लिक करें
इफेक्ट फील्ड आपको एनिमेशन्स ऑप्शन्स सेट करने की अनुमति देता है
इफेक्ट फील्ड के तल पर बॉक्स एनिमेशन्स प्रदर्शित करता हैजो प्रस्तुति में जोड़े गये हैं
ध्यान दें कि पहला एनिमेशन एनिमेशन की सूची में जोड़ दिया गया है
नीचे स्क्रोल करें और प्ले पर क्लिक करें
आपके द्वारा चुनित सभी एनिमेशन का प्रिव्यू अब मुख्य पैन पर प्ले होगा
अब स्लाइड में दूसरे टेक्स्ट बॉक्स को चुनें
कस्टम एनिमेशन के नीचे एड पर क्लिक करें
कस्टम एनिमेशन डायलॉग बॉक्स में बेसिक एनिमेशन के नीचे वेज चुनें
गति को मीडियम सेट करें
ओक पर क्लिक करें
ध्यान दें कि यह एनिमेशन बॉक्स में जोड़ दिया गया है
ध्यान दें कि सूची के एनिमेशन क्रमबद्ध हैं जैसे आपने इन्हें बनाया है
दूसरे एनिमेशन को चुनें
प्ले बटन पर क्लिक करें
आप प्रिव्यू के लिए एक से भी अधिक एनिमेशन चुन सकते हैं
यह करने के लिए Shift की पकड़कर रखें जब एनिमेशन चुन रहे हों
प्ले पर क्लिक करें आपके द्वारा चुनित सभी एनिमेशन्स का प्रिव्यू प्ले होता है
अब तीसरे टेक्स्ट बॉक्स को चुनें
लेआउट्स में एड पर क्लिक करें
एंट्रेंस टैब में बेसिक के नीचे डायमंड चुनें
गति स्लो सेट करें ओक पर क्लिक करें
प्रत्येक एनिमेशन कुछ डिफॉल्ट प्रोपर्टिज के साथ शुरू होता है
आप चंगे आर्डर बटन्स का उपयोग करके एनिमेशन के क्रम को भी बदल सकते हैं
प्रत्येक एनिमेशन के लिए डिफॉल्ट प्रोपर्टिज देखें और सीखें कि उनमें बदलाव कैसे करें
सूची में पहले एनिमेशन पर डबल क्लिक करें
यह डायगोनल स्क्वेयर्स ऑप्शन है
इफेक्ट्स आप्शंस डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
डिफॉल्ट रूप से इफेक्ट्स टैब प्रदर्शित होता है
सेटिंग्स में डायरेक्शन ड्राप डाउन पर क्लिक करें और फ्रॉम राइट टो टॉप चुनें
इसमें प्रगति के रूप में दायें से एनिमेशन की शुरूआत और शीर्ष की ओर स्थानांतरण के प्रभाव हैं
डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए ओक पर क्लिक करें
जिसे आपने जोड़ा है उस एनिमेशन का निरीक्षण करने के लिए प्ले बटन पर क्लिक करें
इस एनिमेशन पर फिर से डबल क्लिक करें
इफेक्ट आप्शंस डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है
टाइमिंग टैब पर क्लिक करें
डिले फील्ड में डिले को 10 एसईसी तक बढाएँ
इसमें एनिमेशन शुरूआत के प्रभाव एक सैकंड के बाद हैं
ओक पर क्लिक करें
अब पहले एनिमेशन को चुनें
प्ले बटन पर क्लिक करें
आप आपके द्वारा किये गये प्रभाव के बदलाव का निरीक्षण कर सकते हैं
सूची में दूसरे एनिमेशन पर डबल क्लिक करें
यह वेजेस ऑप्शन है जिसे हमने सेट किया
इफेक्ट्स आप्शंस डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
टेक्स्ट एनिमेशन टैब पर क्लिक करें
टेक्स्ट एनिमेशन टैब टेक्स्ट को एनिमेट करने के लिए कई ऑप्शन्स प्रदान करता है
ग्रुप टेक्स्ट फील्ड में बाय 1एसटी लेवेल पैराग्राफ्स चुनें
यह चुनाव प्रत्येक बुलेट प्वॉइंट को अलग अलग प्रदर्शित करता है
आप इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं जब आप दूसरे पर जाने से पहले एक बिंदु पर अच्छे से चर्चा करना चाहते हैं
ओक पर क्लिक करें
प्ले पर क्लिक करें
इस ट्यूटोरियल को रोकें और यह नियत कार्य करें
विभिन्न एनिमेशन्स बनाएँ और प्रत्येक एनिमेशन के लिए इफेक्ट ऑप्शन्स को चेक करें
अब हमारे द्वारा किये गये एनिमेशन प्रभावों को देखना सीखते हैं
स्लाइड शो बटन पर क्लिक करें
फिर एनिमेशन को देखने के लिए स्क्रीन पर कहीं भी क्लिक करें
एनिमेशन प्रस्तुति की नीरसता को तोड़ने और कुछ बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए अच्छा तरीका है जो अन्यथा समझाने के लिए कठिन हैं
फिर भी सावधान रहें इसका अधिक उपयोग न करें
अधिक एनिमेशन चर्चाधीन विषय से दर्शक का ध्यान दूसरी ओर ले जायेगा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
इस ट्यूटोरियल में हमने कस्टम एनिमेशन इफेक्ट ऑप्शन्स के बारे में सीखा
यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है
तीन बुलेट प्वॉइंट्स के साथ एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएँ
टेक्स्ट को एनिमेट करें जिससे कि टेक्स्ट लाइन दर लाइन दिखे
इस एनिमेशन को प्ले करें
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें
यह स्पोकन ट्यटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है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
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा हैयह भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है
इस मिशन पर अधिक जानकारी दिए गए लिंक पर उपलब्ध है httpspoken tutorialorgNMEICT Intro यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित हैआईआईटी मुंबई की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद